यहां बाहर एक बड़ा गांव है गांव के अंदर एक--

और इसके बाजू में एक ब्लैक कलर की लाइट है एक पाउड में--

यहां पर ब्राउन कलर की बिल्डिंग ही बनी है।

बुक्स दुकान के बाहर तीन आदमी खड़े हैं।

टॉवेल रखी है। जस्ट उसके पास मे एक रेड कलर की पानी के--

ब्लैक कलर की टेबल्स लेकमी का फैशन का रखा है।

यहां पर कुछ लड़कियां सुंदर-सुंदर ड्रेस साड़ी टंगे--

अंदर मंदिर साफ से बना हैं।

बाहर बहुत सारे गाड़ियां खड़ी हैं उसपे एक--